इस फोटो को देख के लग रहा है कि यह एक किसी व्यू की फोटो है यहां पर सामने का व्यू देखने में काफी अच्छा लग रहा है और--

इस फोटो में मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने मुझे काफी तीन से चार लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर को देख के लग रहा है कि ये एक किसी मतलब आसपास या गुरुद्वारे मस्जिद की फोटो है।

फिर अच्छी तरह के मतलब डेकोरट कर रखा है।

देखने में पिक्चर की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी से इन्होंने ने खींच रखी हुई है और सामने मुझे एक जो पेड़ का घर बना हुआ है वो दिखाई दे रहा --

और मौसम के हिसाब से मतलब गाड़ी भी मतलब काफी खड़ी हुई है।

देखने में पिक्चर जो इन्होंने काफी अच्छे तरीके से क्लिक कर रखी है और पिक्चर भी मतलब ये--

गाड़ी वगैरा भी दिख रही है पानी की पाइप वगैरा भी दिख रही है पीछे बना रखा हुआ है। मंदिर के परिजनों ने लाल रंग का एक पर्दा टांग रखा हुआ है।

काफी सारे मतलब अ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं।

और मुझे इसमें एक मतलब अह काफी गाड़ियां भी मुझे दिखाई दे रही हैं जहां पर एक मुझे खंभा भी दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति गाड़ी रोक कर--

बिल्डिंग के सामने काफी पेड़ वगैर भी बने हुए हैं पेड़ के सामने नीचे काफी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं और--

इस फोटो में मुझे एक किसी एक सीटी हर्ट --

मतलब अह बराबर आ रहे हैं और जा रहे हैं।

सामने मुझे एक से दो बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं ये किसी सामने किसी कॉलेज स्कूल कि या चर्च की फोटो होगी।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जहां पर पर ढेर सारे पेड़ वगैरा पौधा वगैरा लगे हुए हैं।